यहाँ पर बहुत सारे खेत दिखाई दे रहे है। यहाँ पर एक पानी का गड्डा दिखाई दे रहा है यहाँ पर खेत में पेड़ भी दिखाई दे रहे है और यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रिक टावर भी दिखाई दे रहे हैं।

और सीलिंग में लाइट दिखाई दे रही हैं यहाँ पर कुछ ट्रांसपरेन्ट विंडोज़ लगी हुई है जो कलम का आर्किटेकचर है वो रेड और ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है।

और मुझे आगे की तरफ कुछ पत्थर रखे हुए दिखाई दे रहे है और ये जगह बहुत ही खुली-खुली दिखाई दे रही है जहाँ पर मुझे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा।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

मुझे एक ग्राउन्ड दिखाई दे रहा है ग्राउन्ड के पास में बैठने की व्यवस्था भी दिखाई दे रही है ग्राउन्ड में कुछ लोग बैठे हुए भी है कोई फोन चला रहा कोई बात कर रहा है ग्राउन्ड के पीछे मुझे पहाड़ी और पेड़ भी दिखाई दे रहे है और--

और आसमान मेरे को पूरा खुला दिखाई दे रहा है और यहाँ पर कुछ कन्स्ट्रक्शन का कार्य चलते हुए भी दिखाई दे रहा है।